बहोत सारे पेड़ पौधे रोड के साइडों में भी लगे हुए--

मंदिरों के बाहर ब्राउन रंग का टेबल रखा हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें पहाड़ो का बहोत सुंदर सा दृश्य दिखाया गया है।

इसके आस पास बड़े बड़े हरे रंग के पेड़ लगा रखे है।

बहोत सारा सामान पैकेट के अंदर है जैसे कि दाल चने गेहूं आदि।

समुद्रों में छोटी छोटी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है।

खेत के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें दुकान दिखाई दे रही है जो की किड सैक्शन की है।

बहोत सारे कपड़े हैंगर में लगे हुए दिखाई--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

पेट्रोल पंप में बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं।

बोर्ड पर विश्व रक्तदाता लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर की तरफ बड़े बड़े काले रंग के गेट लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा डैम दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें सफेद रंग की दुकान दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें एक स्टेच्यू दिखाई दे रहा है जो बुद्धा का है।

इस तस्वीर में हमें रोड के आस पास का नजारा दिखाया गया है।